कार के सामने तीन लोग खड़े हैं।

जो कि एक आदमी के हाथ में पूजा की थाली है जो कार को पूजा कर रहा है।

फोटो फ्रेम भी लगाया हुआ है जिसमें दो आदमी की तस्वीर है।

तथा सामने एक अ छोटा सा पानी का तालाब है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

यह एक बार का चित्र है जोकि रेस्टुरेंट भी है।

इस बार में फ्रॉक एन क्रैक लिखा हुआ है।

इसमें कै कैफे ओलेज करके भी एक बोर्ड है ।

स्केटिंग करने के लिए है बड़ा सा फुटबॉल है बैग रखे हुए हैं।

यह तीन मंजिल का एक बिल्डिंग है।

बिल्डिंग के सामने चारों ओर ग्रिल से बना बना हुआ एक गेट है।

गेट के सामने एक चबूतरा है जो की स्टील का चैन बनाया हुआ है उसमे।

बच्चों का स्कूल ड्रेस का रंग है अ ब्राउन कलर का ब्लेजर है और सफेद रंग का ड्रे--

तथा बिल्डिंग के चारों ओर कांच से लगी हुई दीवारें बनी हुई है ।

यह एक बाइक का शोरूम है जो की हीरो कंपनी का है।

मशरूम भी रखे हुए हैं दुकान के बाहर एक नल लगा हुआ है नल के नीचे एक टब रखी हुई है।

यह एक मंदिर का चित्र है जिसमें तीन चार मंदिरें हैं अलग अलग।

यह एक मस्जिद है जिसमें दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं बैठ के।

यह एक दुकान का चित्र है जोकि दुकान के चारों ओर दरवाजे में कांच लगा हुआ है।